जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां भी लगी हुई है साथ ही चट्टान के साइड में कुछ पेड़ पौधे भी मुझे साफ नजर आ रहे हैं।

फोटो के अंदर मुझे एक गलियारा दिखाई दे रहा है जिस मर कुछ दो से तीन बाईके खड़ी है।

सड़क के किनारे मुझे एक रेड कलर का गेट दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा है यहां पर काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

साथ ही में मुझे सड़क भी दिखाई दे रही है सड़क के किनारे एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी है।

फोटो के अंदर मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के सामने कुछ लोहे के पाइप भी लगे हैं जिनके ऊपर रेड कलर का रिबन है।

और यहां पर एक व्यक्ति भी है उसने व्हाइट कलर की चेक्स शर्ट पहनी है और वे इस गाड़ी को रिपेयर कर रहा है।

यहां पर लाइटिंग की काफी अच्छी व्यवस्था की गयी है और फर्श भी काफी सफेद और चम चमाता नजर आ रहा है।

पीछे की तरफ दो बड़ी लाइटे भी दिखाई दे रही है और आसमान का कलर नीला है।

और अंदर मुझे एक बड़ा कैंपस दिखाई दे रहा है जिसमें वाइट कलर के टाइलें दिखाई दे रही है।